सामने में फूल लोग बहुत सुंदर से है और जगह लोग भी बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है।

गाड़ी का इंजन लोग भी पूरा निकला हुआ देखा है बहुत ही पुराना हो गया क्या।

बहुत पुराना लोग दिखाई दे रहा है यहां में गाड़ी का इंजन लोग सब दिखाई दे रहा है यहां में।

दुकान में भी क्या क्या क्या रखा है बहुत समान है और--

पीछे बहु सुंदर से हैं।

मेरे को बहुत ज्यादा है। वह आदमी लोग का कपड़ा जो रेड कलर ब्लू कलर येलो कलर ।

बहोत सुंदर से ये बना के रखा है यह अली अली का सामने में है।

हाईवे का सामने में है बहोत सुंदर सा दिखाई दे रहा है।

अंदर में बहुत ज्यादा समान है और --

ये छोटा छोटा सामानों को बहुत ज्यादा है बच्चा लोग का खिलौना भी बहुत ज्यादा दिखाएं।

लाइट भी बहोत अच्छा है लाइट भी दिखाई दे रहा है और सुंदर से है चेयर लुक भी बहुत बहुत सुंदर है।

उसका बाद में येलो येलो से भी केया है वो भी कुछ दिखाई दे रहे --

पीछे का एक ठो घर में ऊ ऊपर में येलो कलर का सिंटेक्स भी एक ठो दे रहा दिखाई दे रहा है और आदमी भी एक ठो दो ठो दिखाई दे रहा है।

भी लोग भी हैं और राइस कुकर भी है।

और ये कारपेट भी है बहुत सुंदर से है बहोत डामी डामी वाला है ये दुकान में सामान बहुत कुछ चीजे है डामी डामी वाला चीज है बहुत ज्यादा है।